खूप मोटा सा इते एक स्टेज लागलेला आहे स्टेज वर्ती एथे भरपूर आशी लाईट लागलेली आहे पांढऱ्या कलर चा कापड इथे टाकलेला आहे आणि स्टेज भरपूर असा सजवलेला ये तिथे देवी ते देवी देवता असे दिसत आहे.

भरपूर इथे गाड्या लाग लागलेल्या आहे.सावलीमध्ये झाडांच्या स्टील चे पाइप इथे लागलेले आहे. आणि विजांचे तारा सुध्दा इथ वरतून दिसत आहे.

त्यांच्यातून पिवळा रंगा चा गुलाल निगत आहे स्टेज वरती हे एक जा शाळेचा कार्यक्रम चालू आहे असे इथे दिसत आहे.